और ब्लैक कलर का टेबल चेयर भी है।

इसमें लोग काम कर रहे है।

इसमें एक दुकान है उसमें तीन लोग करे हुए हैं।

सीलिंग के ऊपर एक फैन लगा हुआ है।

कुछ लोग के हाथ में लाठी भी है।

पलुवा भी बहोत सारा है।